यह तस्वीर एक पार्क की है। जहां पर पार्क के बीचों बीच एक नहर बह रही है और उसके सामने एक बड़ा सा किल --

ये तस्वीर एक दुकान की है जिस दुकान में स्कूल की पेंट किताबे पेन पेन्सिल रबड़ और भी बहोत सारी --

यह तस्वीर एक बर्थडे पार्टी की है जहां पर हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ है और बोहोत सारे कलरफुल बलूंस भी लगाए गए हैं।

उस मूर्ति पर कुछ बच्चे चढ़ कर खेल रहे हैं। उस मूर्ति का रंग सफ़ेद है और वहां पर बहोत सारे पेड़ भी हैं।